एक छोटा लड़का और एक महिला भी मौजूद है।

इसमें टेबल फुल खेलने वाला गेम बनाया गया है।

यहां काफी साफ सफाई एवं सजावट भी है।

यहां सामने मां चंचल ड्राई फ्रूट्स लिखा हुआ है।

बाहर में बहुत सारे फल एवं ड्राई फ्रूट्स रखे हुए है।

यहां एक बहु मंजिला इमारत बना हुआ है।

पीछे कुछ बॉडी लोशन रखे हुए हैं।

सामने एक अस्थाई रूप से मकान बना हुआ है।

ऊपर में टबे भी है यह चारों ओर से घेरा हुआ है।

यहां लकड़ी की बेचें लगी हुई है जिसपर विद्यार्थी पढ़ रहे है।

यहां कुछ बालकनी भी बने हुए हैं।

जैसे रोहू कतला झींगा इत्यादि।

एक में भारतीय स्टेट बैंक और एक में यहां शाखा परिषद सी_सी_टी_वी कैमरे की निगरानी में है लिखा गया है।

यह एक बहुत बड़े पहाड़ का दृश्य दिखाई दे रहा है।

सामने बहुत सारे दरवाजे की स्ट्रक्चर बनाई गई है।

बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर एवं ईंटें नीचे गिरी हुई है आसमान में धूप खिला हुआ है।

दो लैंप भी यहां पर लगे हुए हैं।

पानी में एक मोटर वाली नाव की मौजूद है आसमान में बादल छाए हुए हैं।

यह एक गार्डन का दृश्य है सामने एक लोहे का बहुत बड़ा गेट लगाया गया है।

जैसे शैंपू टॉयलेट क्लीनर साबुन चॉकलेट्स बिस्किट कोल्ड ड्रिंक इत्यादि।

कुछ लोग भी यहां पर मौजूद है सामने एक वजन मापने वाला मशीन भी है।

सामने एक पोस्टर में तमिल भाषा से कुछ लिखा गया है।

कुछ हरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं आसमान में धूप खिली हुई है।

इसमें ऊपर में कुछ बल्बें जल रही हैं।

कुछ पंखे एवं ए_सी भी लगाए गए हैं।

सामने एक पोस्टर मे श्री अष्टविनायक लॉटरी सेंटर लिखा हुआ है।